जोकि माइक में कुछ बोल रहे हैं और पीछे जीजस क्राइस्ट की प्रतिमा भी लगी हुई।

जैसा की इस चित्रण में दिखाया जा रहा है। ये किसी सैलून के बाहर का चित्र है। यहाँ बाल कटवाने के लिए आते हैं।

सब लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं और काफी अच्छी लग --

जहाँ पर पुरुष अपने बाल कटवाने के लिए आते --

इस ट्रेडर्स की दुकान का नाम रहमानी ट्रेडर्स है। जहाँ पर लोहे का सामान सीमेंट सरिया गिट्टी बालू सब कुछ मिलता है।